यह एक गेट है जिसमे लौंड्री लेब लिखा हुआ है वी केयर योर फेब्रिक का पोस्टर लगा हुआ है उसमे सर्विसेस के बारे में लिखा हुआ है जैसे होटल लौंड्री गेस्ट लौंड्री हॉस्पिटल लौंड्री होस्टल लौंड्री डिटेल लौंड्री इसमें का कॉल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है उसका नंबर भी दे रखा है।

बहुत बॉल लगा हुआ है इधर तार भी इक्कठा किया हुआ ।

यह एक डी.जे. है बहुत बड़ा डी.जे. जिसमें बहुत सारे स्पीकर हैं लगभग --

लिखा हुआ है सामने डेट अप्रिल छब्बीस लिखा हुआ है बहुत यहाँ पे फूल भी है फ्लावर पॉट है बिल्डिंग है हरा रंग का ब्लू भी रंग है उसमें।

आपस में कुछ बात कर रहे है ये कुछ धार्मिक कार्यकम लग रहा है कुछ पूजा-पाठ का --